libreoffice base पर इस spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे कि कैसे query wizard का इस्तेमाल करके सरल queries बनाएँ fields चुनें fields का वर्गीकरण क्रम निर्धारित करें और एक query के लिए खोज मापदंड या नियम प्रदान करें
चलिए सबसे पहले सीखते हैं की query क्या होती है
query database से विशिष्ट सूचना पाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं
दूसरे शब्दों में हम database से कुछ data के लिए query कर सकते हैं जो एक दिए हुए मापदंड से मेल data है
उदाहरणस्वरुप अपना परिचित उदाहरण library database लेते हैं
हमने library database में पुस्तकों और सदस्यों की जानकारी संचित की है
अब हम library database से पुस्तकालय के सभी सदस्यों के लिए query कर सकते हैं
या हम database से उन सभी पुस्तकों के लिए query कर सकते हैं जो पुस्तकालय में नहीं है
चलिए देखते हैं कि base का इस्तेमाल करके कैसे हम एक सरल query बनाते हैं
हमारा उदाहरण है कि पुस्तकालय के सभी सदस्यों को उनके phone नम्बर के साथ सूचीबद्ध करना
हम library database में हैं आपको सम्भवतः अब तक पता होगा कि इसे कैसे खोलें
चलिए बाएं panel पर queries icon पर click करते हैं
दायें panel पर हम तीन विकल्प देख सकते हैं
चूँकि हम पहले सरल query बना रहे हैं हम एक सरल और तेज़ तरीका चुनेंगे
और यह query wizard का इस्तेमाल करके होगा
जटिल queries बनाने के लिए base हमें बहुत ही सरल विकल्प प्रदान करता है जैसे कि create query in design view
और create query in sql view जिसके बारे में हम आगे जानेंगे
अभी के लिए use wizard to create query पर click करते हैं
अब हम एक पॉपअप window देखते हैं जिसके उपर query wizard लिखा है
बायीं तरफ हम 8 steps देखते हैं जिनको हम देखेंगे
हम step 1 में हैंfield selection
दायीं तरफ हम label tables के नीचे एक drop down box देखेंगे
यह वह है जहाँ से हम data स्रोत चुनेंगे जिसकी हमें इस query से आवश्यकता है
चूँकि हमारी उदाहरण query पुस्तकालय के सभी सदस्यों को सूचीबद्ध करने के लिए है हम drop down box में से tables: members पर click करेंगे
double चलिए बायीं तरफ available fields सूची में name field पर click करते हैं और इसे दायीं तरफ सूची box में स्थानांतरित करते हैं
अगला बायीं तरफ phone field पर click करते हैं और इसको दायीं ओर स्थानांतरित करते हैं
ध्यान दीजिये कि सभी fields को दायीं तरफ स्थानांतरित करने के लिए हम double arrow button का इस्तेमाल कर सकते हैं जोकि दायीं तरफ निर्देश कर रहा है
अब चलिए नीचे next button पर click करते हैं
अब हम step 2 में हैंsorting order
चूँकि हमारी query का उत्तर सदस्यों की सूची और उनके phone numbers हैं हम इसे जैसे हैं वैसे ही छोड़ सकते हैं
या names सूची को सदस्यों के names के आधार पर क्रम में लगा सकते हैं
base wizard हमें एक समय में उत्तर में 4 fields को क्रम में लगाने की अनुमति देता है
अभी के लिए सबसे उपर के drop down box में click करते हैं
और members name पर click करिये
names यह भी चुन सकते हैं की यदि names आरोही या अवरोही क्रम में लगाने हैं
चलिए ascending विकल्प पर click करते हैं
और अगले step की ओर बढ़ते हैं
step 3search conditions
यह step मदद करेगा यदि हम अपने उत्तर को कुछ शर्तों पर निर्धारित करके बाध्य करना चाहते हैं
उदाहरणस्वरुप हम उत्तर को केवल उन सदस्यों के लिए निर्धारित करके बाध्य कर सकते हैं जिनका name अक्षर r से शुरू होता है
इसके लिए name fields drop down box में click करेंगे और members name पर click करे
अब condition drop down box पर click करें
विभिन्न conditions पर यहाँ ध्यान दीजिये;
चलिए like पर click करते हैं
value text box में capital r और एक प्रतिशत चिन्ह type करते हैं
इस तरह से हम अपनी query में सरल और जटिल शर्तों को ला सकते हैं
चलिए अब सभी सदस्यों को सूचीबद्ध करने के लिए value text box में से r% डिलीट कर देते हैं और next button पर click करते हैं
ध्यान दीजिये कि हम सीधे step 7 पर गये हैं
ऐसा इसलिए क्योंकि हम केवल एक table से एक सरल query बना रहे हैं
और हमारी query जानकारी देगी नाकि सार
summary queries सभी functions से और समूहीकरण करके data देती है
कुछ उदाहरण हैं सभी सदस्यों की संख्या या सभी पुस्तकों के sum का जोड़
हम इनके बारे में आगे सीखेंगे
ठीक है अब यहाँ aliases निर्धारित करते हैं
मतलब चलिए परिणामी सूची में उपयोगी या विवरणात्मक labels या शीर्षक प्रदान करते हैं
अतः name field के पास alias member name हो सकता है और phone field के पास alias phone number हो सकता है
अतः चलिए इन नई aliases को इन दो text boxes में type करते हैं और next button पर click करते हैं
अब हम step 8 पर हैंअंतिम step
यहाँ अपनी सरल query को एक अच्छा विवरणात्मक name देते हैं
name of the query label के आगे list of all members and their phone numbers type करते हैं
अब ध्यान दीजिये कि wizard में हम अपने चुनावों का एक overview यानि संक्षिप्त विवरण देख सकते हैं
और यहाँ से हम आगे कैसे जाना चाहते हैं
चलिए उपरी दायीं तरफ display query विकल्प पर click करते हैं और finish button पर click करते हैं
wizard window बंद हो गयी है और यहाँ एक नई window है जिसका शीर्षक है list of all members and their phone numbers
ध्यान दीजिये कि हम सभी चार सदस्यों उनके phone numbers के साथ देख रहें है जिनको हमने शुरू में members table में प्रविष्ट किया था
साथ ही हम देख रहे हैं यह सूची वर्णमाला के आरोही क्रम में रखी गयी हैं
अतः यह हमारी पहली सरल query है
यहाँ एक नियत कार्य है
एक query बनाइए जोकि सभी पुस्तकों को आरोही क्रम में सूचीबद्ध करेगी
सभी fields को सम्मिलित करिये
उसको list of all books in the library name दीजिये
इसी के साथ हम libreoffice base पर wizard का इस्तेमाल करके queries बनाने के इस tutorial की समाप्ति की ओर आ गये हैं
संक्षिप्त में हमने सीखा की कैसे: query wizard का इस्तेमाल करके सरल queries बनाएँ select fields fields का क्रम निर्धारित करना और एक query के लिए खोज मापदंड या नियम प्रदान करना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
यह project